यह एक रेस्टोरेंट है इसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है।

गेट के पास में कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं।

और एक कैमरा भी लगा हुआ है और इसके छत में दो पंखे भी लगे हुए हैं।

दीवारों पर कुछ तस्वीरे भी लगी हुई है।

उनके पास में एक आदमी और एक औरत खड़ी हुई है।

और पुल के पास में एक नीले कलर का ड्रम भी रखा हुआ है।

और इसमें एक काउंटर भी रखा हुआ है जिस पर एक कपड़ा रखा हुआ है।

इसके छत में कुछ लाइटें लगी हुई हैं।

और इनके ऊपर कुछ घास और पेड़ लगे हुए हैं।

और एक ऑटो भी खड़ा हुआ है जिसमें एक आदमी बैठे हुआ है।

यह एक पेट्रोल पंप है और इसके छत में कुछ लाइटे लगी हुई हैं।

और इस दुकान के अंदर एक सीढ़ी भी रखी हुई है।

इसकी छत में कुछ लाइटे भी लगी हुई हैं।

मेज पर कुछ बुक और मोबाइल फोन गाड़ी की चाभी रखी हुई है और एक झंडा भी रखा हुआ है।

यह एक ब्यूटी पार्लर है इसके अंदर कुछ सोफे और एक टेबल रखी हुई है।

इस तस्वीर में एक आदमी दिख रहा है और उसके पास में कुछ घर बने हुए हैं।

यह एक जिम है इस जिम के अंदर बहुत सी मशीनें रखी हुई हैं।

यह एक मस्जिद है इसके पास में बहुत से आदमी खड़े हुए हैं और कुछ औरत भी खड़ी हुई है।

यह एक स्कूल है वो इसका गेट कांच से बना हुआ है।

यह एक मंदिर है और इस मंदिर में कुछ भगवानों की तस्वीरें रखी हुई हैं।

उनके गले में कुछ फूलों की माला भी पड़ी हुई हैं।

और बस के ऊपर कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

यह एक दुकान है और इसके अंदर कुछ पेंट की बाल्टीया रखी हुई हैं।